बहुत ऊंचाई की ऊपर है इसमें --

कार्डन मतलब सड़क दिखाई दे रही है और --

मंदिर में कुछ सजावट भी है।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

और अ आसमान दिखाई दे रहा है।

काम कर रहे हैं कुछ रंग बरंगे कपड़े में --

और र अ रेड कलर की दीवार है।

खिड़कियों में जाली लगी हुई है और --

बनी हुई है और उसमें कुछ --

यह एक होटल जैसी दिख रही है।

पीली कलर में दिखाई दे रही हैं।

कुछ लोग है जो एक टीन शश खींच रहा है कुछ --

और हरे भरे पेड़-पौधे दिख रहे है।

अंदर के अलमारी मे कुछ चीजे खेल-खिलौने वगेरा रखे हुए है। --

जिसमें कुछ चेयर्स रखी हुई हैं।

एक घड़ी लगी हुई है --

एक पीछे खड़ा है इसमें --

लाइटिंग लगी हुई है बलब दिखाई दे रहे हैं।

एक घोडा है और एक पे वृक्ष दिखाई दे रहा है।

बस खड़ी हुई है खड़िकियाँ नीली कलर की है।

और खड़ी हुई है एक --

कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें कुछ लोग दबे हुए हैं।

आदमी खड़ा हुआ है इसमें --

और रेड पिली हरी एंड हरे कलर का है।

तेरा ही है बैलून लगे हुए है और--

एक माइक रखे हुए हैं टेबल --

और बादल भी दिखाई दे रहा है।

एस्क मैं के बाहर से बाउंड्री --

एलो से कलर का और --

यह एक गार्डन है इसमें हरे रंग अ हरे -भरे घास --

कौन भी है और कुछ लोग नीचे।

और कुछ काले काले से घने --

कुछ बा अ लड़के -लड़किया और बलून --

इसके किनारे पर एक छोटे-छोटे घर --